ये एक बड़ा सा दुकान है जिसके बोर्ड के ऊपर प्रहलाद केदार नाथ जनरल स्टोर लिखा हुआ है और साथ ही में नूतन ब्यूटी पार्लर भी--